यहाँ पर लोग अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे हैं और बच्चे बोहोत ही होशियार हैं।

के लिये तैयार है ।उस स्टेज बहुत ही अच्छा सजाया हुआ है ।दुल्हा दुल्हन भी अच्छे लग रहे है ।

यहाँ पर सामने एक मंदिर है। जहाँ पर बहुत सारा मैदान खाली पड़ा हुआ है और पेड़ --